बहुत ही सुंदर पेट्रोल पंप है और मैन लाइन रोड पे है।

अंदर बड़ा सा तालाब है। जो देखने में बेहद सुंदर है लम्बी चौड़ाई हरे-भरे पेड़-पौधे लगे हुए है और अ ब यहाँ तालाब के पानी बहुत ही साफ में है जो लोग नहाने के लिए आते हैं। तैरते हुए नज़र आते है जैसे स्विमिंग पुल में तैरते आ इंसान वैसा तैरने के लिए तालाबों में आते है। क्यूंकि बहुत ही सुंदर जगह पे ये तालाब है।

अंदर से खजाना का डेकोरेट किया गया है जो वाकई में देखने में बेहद सुंदर डिज़ाइन में है बहुत सारे कलर कलरफुल में गुब्बारे लगाए गए है।

बहोत सुन्दर-सा दुकानों का इमेज दिखाया गया है जिसमे ऐं कॉपी बुक सारे चीज़ मिलते हैं और एक में हर एक तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं जो बहोत ही कम दामों में ऐसा दुकान में मिलता है जो इस दुकान --

जहाँ से जुड़ा होता है वहाँ लोग को देखने के लिए घूमने के लिए तरसते है और लोग तरह-तरह के लोग और तरह-तरह स के जगहों से ऐसा जगह से उनको देखने के --

फिल्म देखने के लिए आते है बेहद ही अच्छा सिनेमा हॉल है बहुत ही सुन --

की ढाबा दिखाया गया है जो बेहद खूबसूरत है और यहाँ बहोत ही स्वादिष्ट चाय मिलती है।

और ये दूकान में बेहद ताज़ी चाय बनाके बेचीं जाती है और काम दामों में बेचीं जाती जो बेहद सुंदर और स्वादिष्ट होते हैं। जो लोग यहाँ आके पीना पसंद करते है। बहुत ही स्वादिष्ट चाय मिलती है और अच्छे से बिस्कुट --

इतिहास का तरह ऐ भी इमेज दिखाया गया है जो बेहद ही ख़ूबसूरत और लम्बी चौड़ी जगह पे बनाई गई है और मेन लाइन पे है जो देखने पे ही पता चलता है और बड़े-बड़े खिड़कियाँ दरवाजे लगे हैं हुए हैं जो बेहद ही देखने में ख़ूबसूरत है।